ये एक योगा क्लास है। यहाँ पर कुछ लोग योगा कर रहे हैं।

है एक टूरिस्ट बस खड़ी हुई है।